यहां पर एक जनरेटर भी रखा है।

बहोत बड़ी किताबों की दुकान है यहां पर एक आदमी खड़ा

यहां पर एक लोहे की सीढ़ी भी रखी है।

और ईंटें भी रखी हैं और अंदर आदमी भी है और गत्ते भी है।

यहां पर शादी हो रही है।

यह एक क्रिश्चियन मंदिर है।

यहां आदमी खड़े हैं यह बहुत बड़ी दुकान है।

एक आदमी बाहर है और एक आदमी अंदर पैर निकाल रहा है।

यहां पर एक आदमी भी है और एक बोतल भी है।

और एक सैटर भी है और एक बलब भी है।

यह एक बहुत बड़ा बेडरूम है।

हां पर आदमी खड़े हैं।

यहां पर पेड़ पेड़ पौधे भी है।

इस पे एक शटर लगा हुआ है जिसमें आदमी भी है।